यह जेंट्स के कपड़े मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सी टी-शर्ट शर्टें रखी हुई है और यहाँ पर लाल टी-शर्ट भी दिखाई दे रही है।

और फुटबॉल मैच खेला जा रहा है बहुत से लोग फुटबॉल मैच खेलने के लिए खिलाड़ी खड़े हुए है।

यह एक फोर जी डाटा की कंपनी है। सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है और यह एक आइडीया कंपनी की दुकान है।

ये बच्चों वाली ट्रेन है इन पर बच्चे बैठते हैं और खुशी का इज़हार करते हैं।